और ये एक गोल-गोल चबूतरे पे एक पत्थर रखा हुआ है। उसके ऊपर ये मूर्ति बनी हुई है।

ये रोड है। रोड के ऊपर ये कार है।

बहुत सारे लोग है हरी धूपा आ है। और --